यह कोई बिल्डिंग है जोकि काफी बड़ी है। हम जानते हैं की ह अब बड़े-बड़े शहरों में काफी बिल्डिंग हैं बिल्डिंगों में मकान खरीदने के बाद हमें ऐसे ही रहना होता है।

यहाँ बेंचें भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कोई प्रयोग चल रहा है।